और इसमें आधार भी एक बैनर पर लिखा हुआ है। यहाँ मुझे एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है उसके पास एक फेमिकोल भी रखी हुई है।

यह ट्वेल्वेथ क्लास क्लासरूम दिखाई दे रहा है। इसमे एक बोर्ड --